एक औरत ने गुलाबी साड़ी पहनी है ।

काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

केचप और मेयोनेज़ भी रखी है।

काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।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

पत्थर नजर आ रहे हैं काफी सारे--

नीचे सूखे पत्ते पड़े हैं।

एक लड़के ने सफेद शर्ट पहेनी है।

एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है।

सामने एक कार दिख रही है एक घर में कांच लगे हुए हैं।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

पेड़ नजर आ रहे हैं बहुत सारे--